दिए गए इमेज में हमें एक बड़ी सी रोड नज़र आ रही है जिसमें कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कोई बाइक में सवार हैं।

फ्लावर पॉट है और स्कैनर भी दिखाई दे रहे हैं।

दिए गए इमेज में पार्किंग नजर आ रही है जिसमें --

यू.पी.आई. लिखा हुआ है उसमें एक आदमी की चित्र बनी हुई है पीछे फ्रिज दिखाई दे रहा है जिसमें --

अ घर दिखाई दे रहे है जो गुलाबी रंग में है और उसके दरबाजे हरे रंग के है खिड़कियो में --

अ काम्प्लेक्स लिखा हुआ है और वो --

सामने दिए हुए चित्र में एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमे कई सारे खिड़कियां नजर आ रही है जो कांच से बने हुए है जस्ट उससे --

अ एक साइड एक बोर्ड लगा हुआ है। नील रंग का है। उसमें सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है होटल गुलमोहर पैलेस और उसके एंट्रेस में कई कलर --

दिए गए इमेज में हमें सड़क नजर आ रही है। उन सड़क के बीचो-बीच एक डिवाइडर जो पीले और काले रंग में है।

गुलाबी और पर्पल कलर के फ्लावर से डेकोरेट किया गया है दूसरा केक गुलाबी रंग का है जिसमे सफ़ेद और लाल रंग से --

हाजीपुर वैशाली स्थापित एक नो छे आठ वी.आर.ए. बिहार विश्व विद्यालय मुजफ्फर नगर।